इ मंदिर है पूरा संगमरमर का मंदीर हभारत माता का मूर्ति लगल है और सफ़ेद-सफ़ेद साड़ी पहनले त्रिशूल लेले ह इ।

के आजकल अइसहीं मंडप बनत आ। दूलहा - दूलहीं जमीन पे ना बइठत हुंवे कुर्सी पे छोटा - छोटा सोफा पे बइठके शादी होता। एक ठे एक ठे पंडित जी के बनल हा। दुइ ठे पंडित जी रहइये एक ठे पंडित जी रइहँय एक ठी लईकी के माई --

तालाब ह तालाब वा के आरी बड़ा-बड़ा पेड़ है मीठी-मीठी पूरा पेड़ है पेड़ ह। चारों तरफ पेड़ है पड़े लगला है हरियल-हरियल पानी लागल पानी है।